और बिजली का खंबा भी देखाई दे रहा है बहुत सारे पीछे दुकान से देखाई दे रहा है आसमान का रंग व्हाइट देखाई दे रहा है।

पोस्टर पे लिखा हुआ देखाई दे रहा है कुछ और यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ चित्र देखाई दे रहा है दुकान का देखाई दे रहा है।

रंग चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान का रंग दिखाई दे रहा है पहाड़-सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक पार्क है जिसमे बहुत सारे झूला दिखाई दे रहे है और बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे से दिखाई दे रहे है--

ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्कूल मे बहुत सारे बच्चे से दिखाई दे रहे है बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारे आदमी इस समय--